कुछ कंपनी है यहाँ पे और तीन-तीन तल्ला है कुछ अंदर सामान-वमान है दुकान-उमान --

और टांगल है बाहर सीढ़ी और अंदर से रखा हुआ गया हैं जो अभी --